इस चित्र में एक व्यक्ति अपने हाथ में कागज लेकर खड़ा नजर आ रहा है व्यक्ति के आगे --

इस व्यक्ति के पास एक मोबाइल है और यह व्यक्ति वाहन पर बैठा हुआ नज़र आ रहा है। व्यक्ति के पीछे एक नदी भी दिख रही है।

फ् अ नकली पुलों से सजावटें की गई हो और पीले रंग के गुब्बारे नज़र आ रहे हैं --

इनके पीछे ही एक छोटा सा दुकान दिख रहा है और इनके पास ही एक कुर्सी रखी नजर आ रही है।

और व्यक्ति ने काले रंग के चश्मे पहन रखे हैं व्यक्ति के पीछे एक --

और पीछे नीले रंग का बड़ा सा दीवार जैसा कुछ है और ऊपर कुछ रंग बिरंगी बत्तियां जलती नजर आ रही हैं है है है |

और गुलाबी रंग के कुछ बोतल रखे हुए नजर आ रहे हैं और एक गिलास भी रखा हुआ है।

कुछ व्यक्ति ने सफ़ेद रंग के कपड़े भी पहन रखे है| ऊपर एक पंख लगा हुआ दिख रहा है।

यहाँ पर कुछ छोटे बच्चे जुडो क्लास करते हुए नजर आ रहे हैं।

यहां पर दो लोग काम करते हुए नजर आ रहे हैं और वे एक व्यक्ति नीले रंग के कपड़े पहनकर इन लोग को देखता हुआ नजर आ रहा है। इनके पीछे --

ये और कुछ कुछ यात्रिया लोग चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और यहां पर बहुत सारे व्यक्ति दिख रहे हैं और वाहन में चार पहिए लगे हुए हैं।

सर पर भी एक कपड़ा बान रखा है।

यहाँ पर एक बुजुर्ग आदमी एक किताब हाथ में लेकर खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। इनने --

सफेद रंग की वस्तु पहन रखी है। पीछे कुछ किताबें रखे हुए नजर आ रहे हैं।